साइड में व्हाइट कलर का दिवाल है।

पानी गंदा हो गया है।

दुकान में कोई नहीं है।

यह एक रेस्टोरेंट है।

लोग प्रेयर के लिए खड़े है।

आसमान में बादल छाए हुए हैं।

दरवाजे के पास एक महिला खड़ी है।

बगल में सामने नाद रखा हुआ है।

सामने एक स्कूटी लगा हुआ है।

तीन कार बाहर खड़ी है।

ट्रैक्टर के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

बहुत सारे ब्लू कलर की बाल्टीया रखी हुई हैं।

फर्श पे तार भी बिखरे हुए हैं।

यह एक ए_टी_एम है।